बहुत सारे माहिलाऐ और आदमी हैं| यहाँ पे फोटो भी खिंच रहे है| एक महिला है जो बैठी है| उसके हाथ में काले रंग का बैग है|

आदमी जमीन पे बैठा है और दूसरा आदमी एक अंगोछा सर पे बांधे हुए बैठा है।

ये एक किराना स्टोर है और इसके बहार सब्जियां भी रखी हुई हैंप्याज आलू लसन सब बोरियों में और कट्टों में हुवा है।